इधर एक व्यक्ति है जो टी_शर्ट पहना येलो कलर का इधर एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है जो चश्मा पहना हुआ है उसके हाथ में वॉच है और वह नीले रंग का कोट पहना हुआ है।

पीछे एक कुर्सी दिख रहा है एक आदमी कुछ कर रहा है एक आदमी बैठा हुआ है और यहां लाइट बहोत सारे जल रहे हैं।

यहां पर एक बाइक दिख रहा है बाइक के ऊपर एक हेल्मेट रखा हुआ है एक स्कूटी दिख रहा है स्कूटी के बगल में पोस्टर लगा हुआ है छोटा सा।

कुत्ता दिख रहा है बहुत सारे ईटा रखे हुए हैं।

नीचे लाइट जल रहा है एक व्यक्ति बुजुर्ग आदमी है।